एक लड़का कूदते हुए नज़र आ रहा हैं।

उसमें आती जाती गाड़ी दिखाई रही हैं। छोटी-बड़ी --

मुझे इस बार्बर की शॉप में --

और भी बहोत सारी चीज़ है। एक इस्टूल रखा है। ऊपर मुझे लाइट नज़र आ रही है। एक अंकल खड़े हैं। वो दिख रहा है।

और पिंक कलर की झूले नज़र आ रहे हैं। रेड एण्ड क्रीम कलर का एक घर नज़र आ रहा है छोटा सा।

जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा हैं झंडा लेकर उस झंडे का रंग --

जिसमे बोहोत सारे सीढ़ी नज़र आ रही हैं। सिल्वर कलर के पाइप्स नज़र आ रहे हैं। और उसके सामने--

मेरून कलर नज़र आ रहा है।

पिंक कलर का हैं।